उनका पोस्टर लगा है और कुछ दुकान के ठेले लगे हुए है उन ठेले के पीछे कुछ पेड़ लगे है।

बडीसी इस कटिंग की दुकान के अंदर एक लड़का काली रंग की कुर्सियों पर बैठा हुआ है उस लड़के के हाथ मे फोन रखा हुआ है।

ओर कुछ व्यक्ति बस के बगल मे सड़क पर अ खड़े हुए हैं एक बड़ी सी साइकल रखी हुई है।

उसने आपने बालों को ओ कड़वा लिया है और बालो के ये बगल मे कुछ निशान लगवाए हुए है उस लड़के ये के बगल मे एक और लड़का दिखाई दे रहा है।

इस व्यक्ति ने अपने सर पर हरे रंगकी टोपी पेहनी हुई है।

और अपने दोनों हाथों मे एक छोटीसी किताब रखी हुई है।

एक व्यक्ति कॉफी किताब की दुकान के अंदर कुर्सी पर बैठा हुआ हैं उस व्यक्ति ने अपनी आ--